यह सड़क है। यह सड़क काफी बड़ा है। यह सड़क पर बोहोत सारी गाड़ियां आती-जाती है। यह सड़क के किनारे एक ऑटो खड़ी है। यह टोटो तिनसों भाड़े में चलते हैं इसमें आदमी भी बैठते हैं।

यह बैटरी से चलते हैं यह इसे एक आदमी इसे पकड़ के रखा हुआ है।

यह बैंक है यह बैंक काफी बढ़ा है यह बैंक में बहुत सारे आदमी पैसे के लेन-देन के लिए आए हुए हैं यह बैंक में ए.टी.एम. भी हैं ए.टी.एम. कार्ड डाल कर ए.टी.एम. से पैसा भी जाता है ।